इस बिल्डिंग पर फैकेल्टी आफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है।

इस स्टेज पर लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

यहां पर घास भी उगी हुई है।

यहां पर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पर लड़के और लड़कियां योगा कर रहे हैं।

इस कमरे में लाइटे लगी हुई है।

यहां पर एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक दुकान के ऊपर श्री गणेश लिखा हुआ हैं और दूसरे पर पोद्दार ज्वैलर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में जमीन पर टाइल्से लगी हुई हैं।

यहां पर छत से रोशनी आ रही है।

यहां पर वर वधु कुछ महिलाएं और पंडित जी नजर आ रहे हैं।

यहां पर जमीन में घासे उगी हुई है।

यहां पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस स्टेज पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो रहा है।

पहाड़ के नीचे कुछ बिल्डिंगे और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक जनरेटर लगा हुआ है।

यह दिन के समय का तस्वीर है।

यहां पर एक बिल्डिंग में साइकलें लगी हुई हैं।

उस पोस्टर में टाइमिंग और डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं।

यहां पर हेडलाइट ऑडोमीटर मोटर और बहुत कुछ रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक कान्वेंट स्कूल का बिल्डिंग दिख रहा है।

इन बिल्डिंगों में खिड़कियां लगी हुई है।